इस फोटो में हमे एक घास का मैदान दिखाई दे रहा है।

एक पतीला रखा हुआ है उसके ऊपर दो चाट की प्लेट लगी हुई है एक पिला डब्बा दिखाई दे रहा है।

ऊपर सफ़ेद कलर की लाइट भी जल रही है उसमे हमें उंसे कुछ महिला दिखय दे रही है और उसकी छत है जो पिली दिखाई दे रही है।

इस फोटो में हमें एक मकान ह-ह- बना बनता हुआ दिखाई दे रहा है आसपास हमें कुछ मिट्टी भी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में हमें एक फाउंटेन दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमें एक प्लेट दिखाई दे रही है प्लेट के ऊपर पराठे रखे हुए हैं।

पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है एक हमे पीले कलर की क्रेट रखी हुई दिखाई दे रही है इसमे एक लड़का खड़ा हुआ है।

इस फोटो मे हमे एक ठेला दिखाई दे रहा है ठेले के ऊपर एक मछली पड़ी हुई दिखाई दे रही है इसमे हमे कुछ आपी दिखाई दे रही है।

ये एक मछली मंडी की तस्वीर हमे दिखाई दे रही है हमे इसमे कुछ व्यक्ति दखाई दे रहे है एक व्यक्ति ने कत्थई शर्ट पहनी है।

इस फोटो मे हमे एक पियानो दिखाई दे रहा हैं पियानो के ऊपर सफेद काले कलर की पट्टिया भी दिखाई दे रही हैं।

इसमें हमे कुछ व्यक्ति खाना खते हुए दिखाई दे रहे है इस में हमे लाईट और कुछ पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे है सामने एक फैन दिखाई दे रहा है एकजोसट--